जब ये लबालब पानी से भरी होती है तो आकर्षण का केंद्र बन जाती --

मतस्‍यगंधा झील के पास पहुंचे --

और बोटिंग का आनंद लीज --

खाकर देखोगे तो कहोगे भैया ये बिरयानी हैं।

यहाँ के हर बच्‍चे में देखने को मिल जाएगी।

जहां जाओगे खासकर के साम के टाइम आपको क्रिकेट खेलते बच्‍चे दिखेगे ही।

अंदर ए.सी. लगा हुआ है।

मेहनत करते है ठीक ही सामने उनके घर पे --

हो चुकी है बहुत पहले बनी है बिल्डिग ।

जहां है ऐसा काली मंदिर और ढेरों सारे मंदिर और उसकी ठीक दूसरी तरफ हैं।

पक्‍के सब है सेहत के लिए।